और वहां पर कुछ खिड़कियाँ भी दिखाई दे रही--

और तीन लोग वहां पर डांस कर--

किराना दुकान में बहोत सा सामान दिखाई दे रहा है।

हम्म वहां पर एक मकान भी दिखाई दे रहा है कुछ कुर्सियां भी दिखाई दे रही है।

सब बना हुआ दिखाई दे रहा है वहां पर एक व्यक्ति खड़ा--

और एक स्टुल दिखाई दे रहा है और वहां पर--

खंबे के आगे हरे भरे पेड़ हैं पेड़ --

और फिल्डिंग के आगे ग्राउंड दिखाई दे रहा है बिल्डिंग के पीछे कुछ पेड़--

और वहाँ पर दो तीन लोग होटल के अंदर हैं।

और वहां पर कुछ लाइटे भी लगी हुई है।

कुछ अलमारियां भी लगी हुई हैं जिन पर समान--

कुछ लोग दुकान के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि एक रेलवे स्टेशन है।

और वहां पर एक कुलर दिखाई दे रहा है।

मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि एक पेट्रोल पंप है।

यहां पर कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।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

मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि एक बहोत बड़ी किराना दुकान है।

यहां पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है।